सामने ग्राउंड जिसमे निचे हरी हरी घास लगी हुयी है और एक आदमी खड़ा है जो सफ़ेद टी शर्ट काला पैंट पेहेने हुए है और आगे एक नशेड़ी रखी हुयी है जो पिले--

जिसमें इंटरप्राइजेस लिखा है और इसमें नीले कलर से बहुत कुछ लिखा है नीचे लाल कलर से नंबर लिखा है।

वो ही है जो रंगीन कलर की बनी हुयी है और किनारे पे महिला खड़ी हुयी है निचे हरी चद्दर बिछी हुयी--

टेबल बनी हुयी है जो पिले कलर की है टेबल के निचे पूरा पिले कलर का है और उसके दोनों साईड की दीवार काले कलर की है तो ऊपर --

रिंग के चारो और सफ़ेद पट्टी बनी है और निचे हरे हरे लगे हुयी है और आगे एक चबूतरा बना है जिसके ऊपर --

सामने एक ऊपर छत है जो पिले कलर की है जिसके ऊपर एक बड़ा नीले पोस्टर लगा--

थोड़ी पिंक सी है जिसमें बहुत सारे कांच के गेट लगे हुए हैं जो हरी दिखाई दे रही है इनके आगे पीछे--

सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जो उसे ऊपर पीले और ग्रे कलर की पुती हुई है।

जिस के सामने एक कार खड़ी हुई है बड़ी मशीन है जो हरे कलर की है और एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर ल-लाल कलर से पुष्पान धर्मात यादव--

और दो दो लगे हुए है ऊपर लाल ऑरेंज सफ़ेद हरा और फिर नीला कलर है और बाहर की दिवार सिल्वर कलर की दिख रही --

सामने एक पानी का फवारा दिख रहा है जो गोल है और उसमे एक डंडी लगी हुई है जीसके ऊपर --

पीली और पिंक हरी झालर लगी हुई है और रंगीन झालर लगी हुई है और साइड की दिवाल में पर्दे लगी हुई--

सामने एक पंडाल सजा हुआ है जिस पे अंदर एक स्टेज बना है और बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं अंदर पिंक और सफेद--

सीढ़ी रखी हुई है जो पीले कलर की है और पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ की इधर से आसमान दिख रहा है जो नीला अंदर और --

खड़ा हुआ है जो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है और बड़ी सी चाबी हाथ में दि रहा है ये महरूम शर्ट और सफेद पैंट पहनी हुए इसके पीछे के घर--

ईना कलर का है और साइड में कांच की हुई एक खिड़कियां लगी हुई हैं और एक सीढ़ी भी डली हुई--

सामने एक बड़ा स्विमिंग पूल पूल बना है जिसमें बहोत सारे आदमी ही दिखाई दे रहे है और सामने एक बना हुआ है।

जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की टोपी है और पत्रा हरे कलर का है और पैर उसके पीले कलर की है और दूर बहोत से दिख रहे हैं।

सामने एक लोहे की जाली दिख रही है जो हरे कलर की है जिसके नीचे दीवाल बनी है वो लाल से कलर की है और ऊपर एक बड़ा--

लगा हुआ है और ऊपर सफेद और नीला आसमान दिखाई दे रहा है साइड में एक कार दिख रही है।

सामने एक दुकान है जिसमे बहोत सारे रैक बने हुए है जो बहोत सारे सामान--

थोने गेट दिख रहा हैं जो कांच का हैं इसके चारो ओर सफ़ेद पट्टी बनी हुई हैं और साइड की दीवार महक--

सामने ये सोफे सेट रखे हुए हैं जो पीले कलर के हैं और जिसमें रंगीन तीन पीले और कत्था कलर की चद्दर बिछी हुई है और सामने टेबल है जिसपे बहुत सारे --

रखी हुयी है और साईड में एक हम्म बोर्ड लगा हुआ है जो स्किन कल कल का कलर का है जिसके ऊपर एक सफ़ेद पेन --

घास लगी हुई है और कहीं कहीं पीली मिट्टी दिख रही है और उनके पीछे--

ओ पैलेस लिख अह लिखा हुआ है और नीचे दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं और ऊपर लाइट लगी हुई हैं।

दिख रहा है ऊपर कुछ कुछ पोस्टर चिपके हुए है और लाइट लगी हुयी है और अंदर में एक ए_ टी_ एम् मशीन दिख रही ह--

लोहे के डंडे वाले गोल चबूतरे बने हुए है।

सामने एक गोल झूला दिख रहा हैं जिसमें ऊपर रंगीन झूला लगा हुवा हैं।

सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमे ऊपर लाल कलर पूता हुआ है और नीचे--

और एक सामने वाला पीली टी शर्ट पिने हुए है और पीछे की दीवारों पर लाल नीचे पीले कलर की है नीचे --